ये एक आदमी है जो नाव का पकड़े हुए है। नाव का फंडा को पकड़ के फोटो खिचवा रहा है और ये चश्मा पहना हुआ है और बोहोत इस स्टाइल मार के फोटो खिचवा रहा है। इसके पीछे एक नाव है।

यह एक दुकान है जिसमे हरा कलर की बैलून टाइप लगे हुए है और इसमें एक हेलमेट रखा हुआ है और पेप्सी पेप्सी आइसक्रीम इसमें एक रखी हुई है फ्रीज बड़ा साइज एक फ्रीजर रखा हुआ है और ये दुकान भी बहुत बड़ा लग रहा है|